और इस नहर के बगल में ठीक छपर एक बना हुआ हैं।

और टेबुल पर अपना आर्ट एंड ग्राफ बना रहे हैं।

और बहुत सारे मिठाईयां है इसमें --

एक स्टीयरिंग हैदो चक्के है।